यह घर काफी बड़ा है इस घर को सफ़ेद कलर से पेंट किया गया है इस घर में बहुत से खिड़की भी हैं यहाँ पर एक आदमी खड़ा है यहाँ पर दरी बिछाया गया है यहाँ पर बहोत से लड़के योगा कर रहे हैं ।

यह एक सड़क है। यह सड़क पर काफी भीड़ है। यहाँ पर बहुत से आदमी खड़े है। इस सड़क पर छोटे-छोटे गाड़िया भी है। इस सड़क के किनारे बड़े-बड़े पेड़ अ घर भी है।

यह एक बिल्डिंग है यह बिल्डिंग काफी बडा है इस बिल्डिंग में बहुत से कमरे है यह बिल्डिंग काफी उच्चा भी है इस बिल्डिंग में सीढ़ी भी लगा हुआ है इस बिल्डिंग में बहुत से आदमी भी रहते है इस बिल्डिंग के किनारे बड़े-बड़े पेड़ भी है यह बिल्डिंग काफी सुन्दर है।

छोटे-छोटे जीव जंतु भी रहते है यहाँ पर पहाड़ के सामने एक गुफा है यह गुफा पत्त्थर को काट कर बना गये बनाया गया है यहाँ पे एक आदमी गुफा में घुस रहे है इस गुफा के किनारे एक सड़क भी --

पर बहुत सारे घर है यहाँ घर में बहुत सारे दुकान भी है यहाँ दुकान के सामने छोटी-छोटी गाड़ी खड़ी है यहाँ बहुत सारे आदमी भी है इस दुकान के किनारे बैठने की जगह भी बना हुआ है।